इस चित्र के अंदर बड़ा सा बैंक नजर आ रहा है जिस के अंदर एक एटीएम बैंक भी नजर आ रहा है एटीएम के अंदर कुछ व्यक्ती --

इस चित्र के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है जहा पर अलग अलग तरह तरह के झूले भी दिखाई दे रहे है सामने एक बच्ची भी झूले पर झूलती हुई नजर आ रही है।

बँक के सामने कई वाहन भी खड़े हुए है साथी मे एक लड़की भी नजर या रही है सामने कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

स्टेडिअम के अंदर बच्चे कुछ खेलते हुए भी दिख रहें है सामने कुछ घाँस भी नजर आ रही है।